खिड़की में कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आस-पास बहोत सारी पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ टॉप टँगी हुई दिखाई दे रही है।

गोदाम के अंदर एक आदमी बोरी ले जाते दिखाई दे रहा है।

दुकान में एक पंखा लगा हुए दिखाई दे रहा है।

पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

और खुला आसमान दिखाई दे रहा है जिसमे हल्के-हल्के बादल दिखाई दे रहे है।

बाहर एक ठेले पे बहोत सारे फल रखे हुए दिखाई रहें हैं।

आस-पास बहोत सारी किताब रखी हुई दिखाई दे रही है।

स्विमिंग पूल के पास तीन लड़कियाँ जाते हुए दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

एक थैला रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

हलकी-हलकी घास दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ लगी हुई दिखाई दे रहे है।

बैंक के बहार कुछ स्कूटी और मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

गैरेज के एक अंदर कार रखी हुई दिखाई दे रही है।

भारत माता की मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है।